बहोत बड़ी ये दुकान है और ये अच्छे तरीके से बनाई गई है।

और ये बहुत ही अच्छे तरीके से--

बहोत ही खुली जगह पे ये खड़ा है और आदमी जो कि --

बहुत सुंदर ये पिक्चर लग रही है और बहोत ही अच्छे से इसको--

बहोत ही सुंदर इसमें बेड बना हुआ है बहोत लाइटें लगी हुई हैं पिक्चर्स अलग अलग बनी हुई हैं।

ये एक बहोत बड़ी खुली ग्राउंड है। जिसमें बच्चे खड़े हैं और अलग-अलग तरह के कपड़े पहने हुए बहुत सुंदर वृक्ष दिख रहे हैं।

मैनेजमेंट टीच ये बहुत ही बड़ा इंस्टिट्यूट है इसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है।

बहोत ही अच्छे तरीके से इसको--

कॉलिंग के फ्रिज लगे हुए हैं और डस्टबिन लगा हुआ है और--

पीछे भी बहुत सारी समाधियाँ ऐसे ही बनी हुई है उसके जो खड़ा है लड़का उसके--